सफेद कलर किया हुई बस है यहां पर साइकिल भी है आसपास में बहुत सारे लोग हैं एवं बहुत सारा कोहरा है।

बहुत ही अच्छा दृश्य है देखने में मिल रहा है यहां पर मुझे बस स्टैंड का दृश्य दिखाई दे रहा है एक लड़की है जिसने --

इस तस्वीर में बहुत ही अच्छा दृश्य--

बड़ा ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है कॉलेज या फिर स्कूल लगती है या फिर कोई अन्य घर है या फिर कोई फंक्शन होगा।

यहां पर एक व्यक्ति है जो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है एक बड़ा पत्थर है उसके ऊपर बैठा हुआ है आस पास में छोटे मोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत ही अच्छे प्रकार से खींचा हुआ दृश्य ये बहुत ही अच्छी प्रकार से ली गई फोटू है यहाँ पर मुझे कुछ यी स्टूडंट्स यानी विद्यार्थी भीं --

यहां पर मुझे एक अद्भुत तस्वीर दिखाई दे रही है एक फुटवियर --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

बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है जो दृश्य देखा जाए वही दृश्य देखने को लाइक है यहां पर एक --

इस तस्वीर में अं बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है उधर से देखने को लाई गए --

इस तस्वीर में बहुत ही अच्छी प्रकार से खींची गई तस्वीर है जो तस्वीर है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से ली गई है।

नेरीना में है बहुत सारा फुकरेया पर का समान पड़ा हुआ है।

बहुत ही अच्छे प्रकार से फुटकर व्यापार की दुकान है जिसमें बहुत सारी पुस्तके भी रखी हुई है एक व्यक्ति इन पुस्तकों का विक्रय कर रहा है।

इस तस्वीर में बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छी प्रकार से खींची गई तस्वीर है। खींचने वाले ने क्या तस्वीर खींची है?